छत है बहुत अच्छा से अच्छा छत है। गिराया गया है। देखने में बहुत मस्त लग रहा है।

पूल बना हुआ है। पूल पे टीना के बंद किया हुआ है की ऐसे कोई भी आदमी नदी में न गिरे कोई भी सवारी न गिरे।